सोने का बेड भी दिखाई दे रहा है ऊपर मे व्हाईट कलर दिखाई दे रहा है और नीचे जो है पिच कलर मे दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में जो है पेड़ का पत्ता दिखाई दे रहा है पेड़ का पत्ता जो है इसमें ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है।

ऊपर जो है क्लाउड दिखाई दे रहा है क्लाउड जो है इसमें व्हाइट कलर मे दिखाई दे रहा है।

और अंदर जो है वाइट कलर का चेयर लगा के दिखाई दे रहा है लोहा वाला।

और नीचे फ्लोर जो है इसमें येलो कलर में दिखाई दे रहा है और ऊपर में जो है फैन दिखाई दे रहा है और लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

और साइड बाइक दिखाई दे रहा है हेलमेट भी दिखाई दे रहा है।

में जो है दुकान दिखाई दे रहा है दुकान जो है इसमें ब्लू कलर मे दिखाई दे रहा है।

और अंदर में जो है गोदरेज भी दिखाई दे रहा है।

इसमें जो है घर दिखाई दे रहा है घर जो है इसमे येलो कलर पेंट करके दिखाई दे रहा है ऊपर जो है।

ये जो है होटल है होटल जो है इसमें--

प्लेट का प्लेट दिखाई दे रहा है और ये कप भी दिखाई दे रहा है

रेड कलर का ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है।

उसमें जो है पोश भी दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में--

इसमें जो है दुकान दिखाई दे रहा है दुकान जो है इसमें वाइट कलर में दिखाई दे रहा है।

ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है और थोरा काला काला करके भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में जो है क्लाउड दिखाई दे रहा है क्लाउड जो है इसमें वाइट कलर में दिखाई मिल रहा है।

वो दोनों जो है ऑरेंज कलर का--

और ये फ्लोर जो है इसमें ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है।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

और जो ये रेड कलर कारपेट बिछा के दिखाई दे रहा है।

और क्लाउड दिखाई दे रहा है वाइट कलर में स्काई दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में।

औ ए पीछे जो है वाइट कलर में दिखाई दे रहा है।

इस में जो है गाड़ी का शोरूम दिखाई दे रहा है और साथ में ट्रॉफी भी दिखाई दे रहा है।